तस्वीर में श्री राजेश्वरी बुक लेख नाम की एक दुकान दिखाई दे रही है।

कैफे के बाहरी साइड पे एक विज्ञापन और लगा हुआ है जिसमें--

चोरो के बीचों-बीच बैठने के लिए चार कुर्सी हैं जो आरामदायक है।

आसपास का वातावरण पेरो की वजह से स्वच्छ है।

इस तस्वीर में एक खूबसूरत फूल दिखाया गया है फूल का रंग लाल और सफेद है और उसके पंखुड़ियां बहुत ही रसीली है।

दुकान के बाहर एक बोर्ड है जिस पर अमूल चौधरी आइस पार्लर लिखा हुआ है।

दुकान के अंदर कुछ लोग भी हैं दुकान के बाहर कुछ कार्टून भी रखे हैं।

यह रिक्शा रंगीन सजावट और कलात्मक डिजाइन से सुसज्जित है रिक्शा का रंग लाल है और दोनों रिक्शा रोड पर खड़ी हैं।

तस्वीर में एक मोटरसाइकिल की दुकान दिखाई दे रही है दुकान के सामने कई मोटरसाइकिल खड़ी है।

तस्वीर में एक रात के समय का दृश्य दिखाया जा रहा है एक रेस्टॉ के बाहर सजावट की गई है लाल रंग के छत--

तस्वीर में कई के रंग बिरंगे छोटे बड़े साइकिल दिखाई दे रहे हैं यह छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है।

दुकान के पीछे के दीवार पर कुछ तस्वीरें भी लगी हुई है दुकान के सामने एक टेबल भी है और उसपर कुछ सामाने भी लगी हुई है।